आगे के सामने से पहाड़ भी छोटे छोटे दिख रहे हैं फोटो में दिन का मौसम है और सफेद बादल छाए हुए हैं।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

राइट साइड कुछ स्टैचू जैसा भी बना हुआ है।

नीले घर के लेफ्ट साइड एक छोटा सा पीले रंग का घर भी है।

फोटो में एक रास्ता भी दिखाया हुआ है।

उसके राइट साइड एक व्यक्ति गिटार का बैग खड़े हुआ है।

इन सभी घरों का छत टीन से बनाया गया है।

फोटो में बहुत से छोटे बच्चे दिख रहे हैं वे छोटे बच्चे सभी नीले कलर की कपड़े पेहने हुए है।

फोटो में एक बहुत बड़े किचन जैसा व्यू दिखाया जा रहा है।